ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां पे काफी सारे जनम सोफे लगे हैं ब्लैक कलर के।

यहां पर एक्टिवा मिलती है जो की इलेक्ट्रिक एक्टिवा होती है और देखो इनका शोरूम मतलब जैन की एक्टिवा है ना ओला की --

पूल साइड कैफेटेरिया भी है ठीक है सब कुछ चिल्ड्रन पार्क है।

सफेद और पिंक कलर की ये बिल्डिंग है काफी सारी खिड़कियां बनी हुई है।

ठीक है पीछे भी कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि स्किन कलर की है ठीक है दुकाने दिखाई दे रही है चौक है।

नॉन परांठा उसके अलावा यहां पे आपको अह वो फास्ट फूड होता है पैकेट्स कोल्ड ड्रिंक्स सब मिलेगा।

और यहां पे बाहर काम चल रहा है। हलवाई लगे हुए है। पीछे की तरफ टैंट है।

ठीक है दीवार है जो कि सफेद और ब्राउन कलर की है।

ठीक है सामने की दीवार जो है वो ब्राउन ब्राउन है।

ट्रैफिक दिखाई दे रहा देखो कितनी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है यहां पर रोड पे--

ठीक है दरवाजा है जोकि ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और दिन का समय है बाहर से रोशनी आ रही है ए_सी भी लगा है।